इस फोटो में एक बड़ा रूम दिखाया गया है। जहां पर एक बड़ा कुर्सी और एक टेबल रखा हुआ है और इस टेबल पर फोन पे का स्कैनर भी रखा हुआ है।

यह किसी स्विमिंग पूल का चित्र है जहाँ पर बहुत सारे लड़के स्विमिंग कर रहे है।

स्विमिंग पूल के साइड में बहुत सारे लोग खड़े हैं।

इस फोटो में एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर सुविधा रेजिडेंसी लिखा हुआ है।

और इस रेस्टोरेंट में सिठी कैमरे भी लगे हुए है।

इस घर को सफेद रंग से पेंट किया गया है और इस घर के छत के ऊपर पानी वाला टंकी भी लगाया गया है।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

और इस मैकेनिक के सामने किसी व्यक्ति का हाथ दिखाई दे रहा है।

कार पर एक कपड़ा का टुकड़ा भी रखा हुआ है।

इस दुकान के सामने एक जूता दिखाई दे रहा है।

और इस दुकान में बोर्ड भी लगा हुआ है और स्कैनर भी रखा हुआ है।

और इस पटरी पर बहुत सारे गिट्टी ईंटे बिछाए गए है।

और यह स्टेशन देखने में काफी बड़ा लग रहा है इस फोटो में एक आदमी पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं और इस स्टेशन को चारों तरफ से घेरा हुआ है।

और खाने का भी कुछ कुछ सामान रखा हुआ है।

यह किसी रेस्टोरेंट का फोटो है जिसपर मां भगवती रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

और इस होटल के अंदर बहुत सारी कुर्सियां एवं टेबल रखे हुए हैं अंदर दो तीन लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है जिस पर कोका कोला लिखा हुआ है।

इस मैदान से कुछ ही दूरी पर दो बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे है जिसमें से एक बिल्डिंग सफेद रंग का है।

और इस होटल में ऐ_सी भी लगाया हुआ है यह होटल काफी बड़ा नजर आ रहा है।